यहां पर कुछ बेंचेस रखी हुई हैं सामने ब्लू बोर्ड है उस पे कुछ चार्ट लगे हुए हैं कुछ फ्लावर बने हुए हैं।

यहां सामने सेल्फ सोल्व का प्रचार चल रहा है इधर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं बाइक्स भी खड़ी हैं।

यहां ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होते है पंखा रखा--

सैमसंग का ऐसे शेड में प्रचार था वहां पर आग भी लगी हुई है कुछ लोग खड़े होके बातें कर रहे हैं।

इधर ब्लू कलर की बाल्टी रखी हुईं हैं सामने थर्मोकोल के बॉक्सेस रखे हैं।

यहां कुछ बच्चे अपने प्रोजेक्ट बना रहे है।

यहां सामने प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस का ऑफर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कार केयर होती है होम केयर होता है डीप क्लीनिंग होती है।

जीसमें ग्रीन कलर की कुर्सी ऑरेंज कलर की कुर्सियां है।

इधर कुछ कार्टूंस रखे हुए हैं कुछ बड़े बड़े कार्टूंस भी रखे हुए हैं कुछ बोरियां रखी हुई है।

चार पांच कुर्सियां रखी हुई हैं दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई हैं।

यहां बहुत सारी लाइब्रेरीज दिख रही है जिसमें बहुत सारी बुके रखी हुई है।

कुछ छोटे छोटे से पौधे भी लगे हुवे हैं सामने कि तरफ बिल्डिंगे बनी हुई हैं उसमें व्हाइट कलर करा हुआ हैं।

बड़े बड़ी खिड़कियाँ हैं ऊपर नीचे बड़े लोहा का गेट लगा हुआ है साइड में कुछ पौधे रखे हुए हैं इधर की तरफ भी पौधे रखे हुए हैं।

दो तीन लेडीज जेंट्स खड़े हुए है इधर कपड़े की शॉप है एक लड़की कुछ खरीद रही है।

उस पर टेबल पर प्लेट चम्मच गिलास रखे हुए हैं दो तीन जेंट्स बैठे हुए एक जेंट्स खड़ा है।

यहां कांच के केबिन बने हुए हैं उसमें--

रूम हैं उसमें गेट लगा हुआ है लोहे का।

यहां बहुत बड़ा गार्डन है। एक बड़ा सा पेड़ है। कुछ छोटे-छोटे पौधे हैं।

साइड से भी एक धारा गिर रही हैं।